दरवाज़ा लगा है औ सामने एक बेनर लगा हैं जिसपर हीरो लिखा हुआ है। ऊपर हमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है और सामने हमें कुछ ज़ीने दिखाई दे रहे हैं और एक शोकेस रखा --

शिक्षण संस्थान लिखा हुआ है। नीचे आ कुछ व्यक्ति एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है और कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं। कहीं फोर व्हीलर और कहीं टू व्हीलर खड़ी हुई हैं। सामने मैदान --

नोटबुक रजिस्टर कम्पास और लाइट का इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हैं बोर्ड रखे हुए हैं और सामने कुछ बल्ब हैं बल्ब भी रखे --

सामने हमें एक तस्वीर दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें एक रूम दिखाई दे रहा है सामने बोर्ड लगा है जिसका कलर सफ़ेद है और बहुत सारी कुर्सियां और दिखाई दे रही हैं जिसपर बहुत सारे --

पुरुष और लड़कियां और लड़के बैठे हुए हैं सामने एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं जोकि पोडियम पर खड़े हुए हैं ऊपर पंखा दिखाई दे रहा हैं नीचे --

सामने हमें एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें हमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जोकि जीन्स व्हाइट कलर की जैकेट और कत्थई कलर का टोपा लगाए हुए है।

कुछ दराज़ लगी हैं जिनका कलर नीला है और कुछ सूट और कुछ सामान रखे हुए हैं। साइड में एक डोरिमान टंगा है जिसका कलर फिरोज़ी और सफ़ेद है। एक व्यक्ति खड़ा है।

सामने हमे एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसपर हमें एक स्टेज दिखाई दे रहा है स्टेज के सामने एक पुरुष और एक महिला खड़े हुए हैं पुरुष के हाथ में माइक है और महिला के हाथ में भी माइक है ।

सामने हमे एक तस्वीर दिखाई दे रही है इस तस्वीर में हम देख सकते है यहाँ पर हमे दरगाह दिखाई दे रही है जोकि सफ़ेद और हरे कलर से है हरे कलर से है दरगाह के सामने एक बड़ा --